और आसपास कुछ हरे भड़े पेड़ भी लगे हैं।

यहां पे एक शीशे का गेट बना हुआ है।

नीचे कुछ बाइक खड़ी है और एक साइकल भी है और एक पौधा भी है।

और एक पीले रंग का बस भी है।

और कुछ बाइक भी हैं कुछ लोग भी हैं।

ये एक सड़क है जिसमें दो आदमी चल रहे हैं।

कुछ हरे भरे पेड़ भी है और एक कार भी है।

और कुछ जंगले भी लगे हुए हैं।

ये एक खेत है जिसमें एक पाइप लगी हुई है।

यहां पे एक बहुत बड़ा पानी का झरना बह रहा है।

एक लेडिस भी खड़ी है जो पौधों में पानी डाल रही है।

ये एक हॉस्पिटल है जिसमें शीशे के दो लगे हुए हैं।

जिसमे बहुत सारे जंगले बने हुए हैं।

और पानी के झरने भी लगे हुए हैं।

और कुछ पंखे भी लगे हुए हैं कुछ मूर्ति भी है।

ये एक कार पार्किंग है।

और एक पंखा भी लगा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा हॉल है।

जिसमें एक भैंस खड़ी है और एक बछड़ा भी खड़ी है।

और ऊपर टीन बनी हुई है।

यहां पे एक सोफा रखा हुआ है।

और उसके ऊपर कुछ तकिए भी रखे हैं।

कुछ आदमी बैठे हैं कुछ आदमी खड़े हैं।

और दो आदमी भी बैठे हुए हैं कुछ लाइटे लग रही है।

और एक आदमी खड़ा है जिसका मुंह छुपा हुआ है।

उन सोफो के ऊपर कुछ तकिये रखे हैं।

ये एक मैकेनिक की दुकान है।

ये एक खाली सड़क है जिसमें दो बाइक खड़ी है।

ये एक बहोत बड़ी दवाई की स्टोर है।

जिसमें एक ग्रिल भी बना है।

ये एक मार्केट है जिसमें बहोत सारी दुकान है।

कुछ आदमी भी बैठे हैं और एक सूरज है।